मंदिर दिख रहा है मकान दिख रहा है। बहुत सारी कलर दिख रहें हैं। सजावट दिख रही है। हाथी के फोटोज लगे हुए दिख रहें हैं।

बादल में ऑरेंज कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है वाइट नीला कलर दिख रहा है। रोड पे जामुनी कलर दिख रहा है ग्रीन कलर की दिख रहीं हैं। मकान वगैरा दिख रहा है खम्भे दिख रहें हैं बहुत सारे।

मकान दिख रहा है ग्राउंड दिख रहा है ग्रीन कलर |